यह दृश्य किसी डांस क्लास का दिखाई दे रहा है।

यहां पस कई सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

था साइड की ओर एक शटर भी नजर आ रहा है जिसका रंग क्रीम है।

यह दृश्य किसी होटल का नजर आ रहा है।

लकड़ियों की मदद से बनी हुई सादी कलर की अलमारी दिखाई दे रही है।

कई सारी सामाने भी नजर आ रही है।

एवं साइड की ओर एक डब्बा रखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ अमृत जल।

एवम इसने जूता भी पहन रखा है जो कि उसका रंग व्हाइट में है।

तथा कई सारी गाड़ियां भी दिख रही है।

इनडोर एंड आउटडोर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स प्लांट ।

एवम कई सारी सीलिंग फैने में भी लटकी हुई नजर आ रही है।

यह दृश्य किसी आइसक्रीम स्टोर का दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य किसी पहाड़ का दिखाई दे रहा है।

और साइकिल के दुकान का नाम है हिंदुस्तान साइकिल।

इस साइकिल दुकान का नाम बिहार साइकिल ऑटो नाम है।

एक आदमी कॉफी बनाता हुआ दिखाई दे रहा--

एवं साइड की ओर दो सोफा दिखाई दे रही है और कुछ पोस्टर भी नजर आ रहे हैं ।

जहाँ बस इस मस्जिद का रंग व्हाइट पीला और गोल्डन में दिखाई दे रहा है।

इन इमारतों के साथ साइड में एक पेड़ भी नजर आ रहा है।